यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे स्टेच्यू बने है।

यहाँ पे एक वास्तु विहार हे यहाँ पे --

फुटपाथ बना हुआ है आसमान का नीले रंग का है।